पिलर्स पर तिरंगे का कलर किया हुआ--

येह फाजिल्का में हैं।

कुछ चेयर्स भी अन्दर पड़ी हैं।

टेबल पर पीतल की जोत जग रही है।

काफी लोग बैठे हुए हैं।

ये डी_जे फैमिली डी_जे एल_ई_डी फ्लोर कल्चर ग्रुप --

टेबल पर काफी सारी बुक --

सैनिटाइजर की बोटल्स पड़ी है।

सामने एक अलमीरा भीं बनी हुई हैं जिसकी काफी ड्रोअर्स भी है।

एक लड़की के पास घोड़ा पकड़ा हुआ है।

स्टेज पर अपनी फोटो करवा रहे है।

ये भारत पेट्रोलियम का टैंकर खड़ा है।

ये आदमी मूर्ति के आगे फोटो करवा रहा है।

इसके हाथ में वॉच भी बा--

एक टेबल पर फ्लार पॉट भी पड़ा है।

इन गाजरों के पास एक वाइट कलर का थेला भी पड़ा है।